आप इस तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर इस तस्वीर में एक टावर दिखाई दे रहा है।

टावर से हमें नेटवर्क मिलते हैं।

यहाँ पर कितने ज्यादा रखे है। छोटे बच्चो के कपड़े --

यहाँ पर पंखे भी लगे हैं।

काफ़ी बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हैं।

और यह प ग्राउंड कितना बड़ा है काफी बड़ा ग्राउंड है यहाँ और गेम खेलने में बहुत मजा आएगा जैसे क्रिकेट खेलने में हम बते कितनी ज्यादा होगी।

बसों में हम सवारी करने के लिए जाया करते हैं और अपने-अपने जगह --

आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये तस्वीर में किस कोल की तस्वीर है।